मुझे टूपलाइट दिख रही है। मुझे गेट दिख रहा है।

मुझे पेड़ पौधे दिख रहे है।

मुझे पंखा दिख रहा है। मुझे लाइट दिख रही है।

मुझे पानी दिख रहा है। मुझे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।